जिसे कस्टमर देख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुरूप खरीद भी सकते हैं।

नदी में कुछ बोट भी तैरते हुए नजर आ रही है।

यहां पर हमें पार्क का एक नजारा देखने को मिल रहा है।

एक पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ हम साफ तौर पर देख सकते हैं।

यहां पर हमें एक वेयरहाउस का नजारा देखने को मिल रहा है।

यहां पर हमें एक नदी के तट का नजारा देखने को मिल रहा है।

नदी के ठीक नजदीक में एक रोड भी जाती हुई नजर आ रही है।

ग्यालरी पर कांच लगा हुआ है जहां पर खिड़की हमें देखने को मिल रही है।

यहां पर हमें एक कमर्शियल बिल्डिंग का नजारा देखने को मिल रहा है।

दुकानों की पहचान करने के लिए कुछ बोर्ड भी लगाए हुए हैं।

यहां पर हमें एक कमर्शियल बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वाटर पार्क में कुछ जंबो राइड्स भी हमें देखने को मिल रही है।

एक पूल है जहां पर कुछ लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे है।

जहां पर दो व्यक्ति लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

कमरे में सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी है जहां पेमेंट के लिए क्यू_आर कोड चिपका हुआ है।

एक दुकान दिखाई पड़ रही हैं जिस पर हार्डवेयर पेंट्स लिखा हुआ हैं।